यहां पर घ एक घर है जो प्लास्टर किया हुआ है उन्न में दो खिरकियाँ है ऐक खिड़की के बगल में कुछ लिखा हुआ है और एक खिड़की में एक और और एक खिड़की में एक और लगा हुआ है।

ये एक टेंक है जहाँ से पानी आके नीचे गिर रहा है और यह पानी का रंग सफ़ेद है।

यहाँ पर दिन की सूरज की रौशनी आ रही है और ई सब अच्छे से दिख रहा हैं।

यहाँ पर पुल पर चार बाइक लगी हुई हैं जो जो चारों बाइक स्पोर्ट बाइक है और यह काफी खूबसूरत डिज़ाइनर बाइक है।

दुकान के बगल में एक फ्रिज है उसमे बहुत सारी कोल्ड्रिंग्स और पानी की बोतल है उम्म यहाँ पर भी एक चीज रखा हुआ वहां पर भी कोल्डड्रिंग्स है जो अगल-अगल ब्रांड्स की है और उनमे लाइट लगी है जो ग्रीन और रेड कलर की है।

यहाँ टटी पर एक तरफ बोरा टंगा हुआ है जो व्हाइट कलर का प्लास्टिक का बोरा है।